और इसके सामने बहुत महंगे महंगे बैलून लगे हुए हैं और ऊपर लाइट जो लगी हुई वो भी बहुत महंगा दिख रहा है।

और ये जो एक न्यू मॉडल निकला है एफ_जेड एफ_जेड फाइव ।

जिसमें द मिनिस्टर कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ लिखा हुआ है जिसके सामने बहोत सारी साइकिल लगी हुई है कम से कम तीन चार सौ साइकिल तो होंगी ही होंगी।

जिसमें केटना ऐसा कुछ कंपनी का लोगो दिखाया गया है यहां पे कोई हॉल वगैरा मॉल वगैरा खुल रहा है।

जिसके सामने पूरी जमीन गड्डी दिख रही है जमीन पूरा गड्ढा है।

सर्विस कराने का दुकान दिखाया गया है यहां पे एक कार लगी हुई है।

एक शर्ट नॉर्मल शर्ट नॉर्मल पेंट पेंट हॉफ पेंट अंडरवेयर वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पर।

नरेंद्र स्टेडियम बहुत पुरानों से चला हुआ है और मैं भी यहां बचपन में आ के दौड़ता था नरेंद्र स्टेडियम में।